उस फोटो में दो दुकान दिखाई दे रहा है।

इस स्कूल का गेट का कलर नीला है।

इस फोटो में एक मछली दिखाई दे रही है।